के वजे से बहुत अच्छे लग रही है।

और ये जो है दृश्य है नाईट का दृश्य है और इसके वजह से अच्छी लग रही है और बहुत ही बढ़िया लग रही है।

यहाँ पे मुझे एक बहुत बढ़िया सा छत दिखने को मिल रहा है।

और ये बिल्डिंग को बहुत अच्छी तरके से बनाया गया है।

ये बोट पे एक लोग खड़ा है अपना फोटो खींच रहा है | ये जो दृश्य है लाजवाब है बहुत ही बढ़िया है शानदार है ।

तालाब का जो पानी है वो पानी बिलकुल भी साफ़ है | बहुत ही बढ़िया है शानदार है ।

और होटल का जो साइनिंग बोर्ड है वो भी बिलकुल बढ़िया सा है।

और इस दुकान पे बहुत ड्रेस है।

दिखने में बहोत बढ़िया लग रही है ब्यूटीफुल लग रही है।

और ये दोकान पे बहोत सामान भी है।

और ये दुकान का जो कलर है एकदम सफ़ेद है सामान का कलर है एकदम दिफरेन्ट है।

और यहाँ पे प्रिंसपल का एक रूम भी है।